दू पहिया खड़ा बा। बहुत बढ़िया बा। ओकरी बगली में तीन तल्ला घर बा। ओकरी हिं पिछवो बहुत बड़हन घर बा। खूबे निक लागता।